साइड में बैनर लगा हुआ है| उसके पीछे एक पेड़ दिख रहा है| अंदर हमको एक कार दिख रही जो की ग्रे कलर की दिख रही है| उसका पिछले हिस्सा--

जो दो फ्लोर पे दिख रही है| ऊपर दो पुतले दिख रहे है जिनको कपड़े पहना के खड़े किये हुए दिख रहे है| साइड में साड़ियों की और लेडीस के आइटम की दूकान दिख रही है| एक दूकान बंद है जिसका शटर लगा हुआ और नीला कलर का दिख रहा है।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने दुकाने दिख रही है| दुकान सीमेंट की दुकान दिख रही है| सामने हरी कलर की दुकान दिख रही है| उसमें खिड़की लगी है एक दरवाजा लगा है जो हरे कलर का दिख रहा है| खिड़की भी हरे कलर की दिख रही है।

जैसा कि हम आप देख सकते है सामने हमको एक बिल्डिंग दिख रही है| बिल्डिंग सफेद कलर की दिख रही है| इसके नीचे एक फ्लोर है जबकि ऊपर एक फ्लोर है| ऊपर हॉस्पिटल बना हुआ है।

नीचे दुकानें दिख दिख रही है जहाँ पर बहुत सारी बाइके की खड़ी है| कुछ साइकिल भी खड़ी है| कुछ पेड़ दिख रहे है जो कि हरे भरे दिख रहे| कुछ लोग दिख रहे है जो की आपस में बात करते हुए दिख रहे| साइड में सीढ़ियाँ दिख रही है।

इसमें एक मोबाइल की दुकान दिख रही है दूसरी जनरेटर की दूकान दिख रही है| निचे बाइके खडी हुई है| एक आदमी दिख रहा है जो बहार आते हुए दिख रहा है| इसमें जालियां लगी हुई है।

नीचे दुकाने बनी हुई है| एक ट्रेलर की दुकान दिख रही है जबकि दूसरी एम_पी ऑनलाइन जैसी कुछ शॉप दिख रही है| ऊपर की दुकान इंस्टीट्यूट दिख रही है जो कि अभी बंद है| साइड से लोहे की सीड़ी है पर इस पर अभी कोई दिख नहीं रहा है।

शॉप का नाम लिखा हुआ है| नीचे सीड़ी बनी हुई है जो ऊपर जाने के लिए दिख रही है| नीचे ट्रेड्स में भी दुकाने बनी हुई है| बाइकें खड़ी है| बैनर लगा हुआ है| लाइट --

और एक बोर्ड लगा हुआ है जो की खाली दिख रहा है| आस पास हरे भरे पेड़ दिख रहे है नाली दिख रही है| इसमे पानी भरा हुआ दिख रहा है| रास्ता बहुत ही खराब लग रहा है| जो पेड़ है वो हरे दिख रहे है| जो घास है जो हरी दिख रही है| जो की बहुत अच्छी लग रही है।

जैसा की हम देख सकते है सामने हम को एक भवन दिख रहा है| भवन की सरकारी भवन जैसा दिख रहा है| इसकी दीवारें गुलाबी कलर की दिख रही है| इसका छज्जा भी गुलाबी कलर का दिख रहा है।

लगे हुए दिख रहे हैं साइड में ईंटें पड़ी है रेत भी पड़ी है| पीछे एक मल्‍टी और दिख रही है साइड में एक बाय कार है जो बड़ी दिख रही है व्‍हा --

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको ए_टी_एम दिख रहा है| एटीएम का बोर्ड नीला कलर का लगा हुआ है| आला एटीएम की मशीन रखी हुई है| गेट लगा हुआ है।